रैक पर हमें बहोत से कपड़े और कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं।

बहोत से लोग यहां पर हमें--

जिस पर कांच के कुछ रैंक --

साथ ही सामने एक सिग्नल लगा हुआ है।

यहां पर हम सामने सुंदर से पंडाल को देख रहे हैं।

सामने हम एक दीवार देख रहे हैं जिसका रंग भूरा है।

ऊपर पोस्टर नजर आ रहे हैं।

गुलाबी रंग का टेडी बियर दिख रहा है ऊपर कुछ छोटे बच्चों के खिलौने टंगे हुए हैं।

एक बड़ा सा फ्रिज देख रहें हैं जिस पर हमें कुछ ज्यूस और पानी की बोतलें --

सामने एक जाली बनी हुई है।

बहोत से गाड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं।

जमीन पर ईंट के ढेर हैं।

यहां बहोत से टेबल रखे हुए है और चेयर भी--

पानी का रंग गहरा हरा है।